जो कि व्हाइट कलर का टी-शर्ट एंड जींस पहने हुए है और एक ब्लैक कलर का जूता पहना हुआ है और हाथी बोहोत बड़ी है।

एक चित्र दिखाई दे रहा है जोकि ठंड का मौसम लग रहा है। बोहोत सारे लोग हैं जोकि --

स्वेटर और मुफ़रल पहने हुए हैं। एक साइकिल भी दिखाई दे रही है। एक बस --

लग रहा है यह नया है जो कि प्लास्टिक से ढका हुआ है और --

आधा खुला और आधा बंद है। बोहोत सारी कारें दिखाई दे रही है और अंदर मै बोहोत सारा घर भी दिखाई दे रहा है और एक गाड़ी पर कवर लगा हुआ है।

पेंट किया हुआ है और ब्लू कलर की खिड़की है।

यहाँ पर हरे-भरे घास भी दिखाई दे रहे है और हरे-भरे पेड़ भी नजर आ रहे है और कच्ची सड़के भी नजर आ रही है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। लग रहा है किसी बैंक का है। यहां पर एक बोर्ड --

दृश्य है। यहां पर जालीनुमा गेट है और कलर भी बहुत अच्छे --

यहां पर एक दृश्य नज़र आ रहा है। यहां पर पेड़ नजर आ रहा है जोकि हरा है और --

माउंट लिटेरा जी स्कूल लिखा हुआ है यहाँ पर जाली नुमा गेट है।

यहां पर एक चित्र दिखाई दे रहा है। लग रहा है यह किसी बगीचे का चित्र है। यहां पर छोटे-छोटे गमलों में --

पांच बोतल रखी हुई हैं जोकि बिसलेरी की है यहाँ पैर चद्दर --

यहाँ पर एक औरत जो कि माइक लिए कुछ बोल रही है और पीछे में एक जीसस का स्टेचू भी रखा हुआ है।

लग रहा है यह दौड़ का मैदान है। जहां बच्चे दौड़ते हैं। दो बच्चों ने येल्लो कलर का ड्रेस पहना हैं। एक बच्चों ने --